और फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए है।

आ लोहे की वायर्स हैं पतली पतली --

एक स्मॉल पूल आती हैं जिस बच्चों जैसा।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ स्कूल पेन्स हैं पेंसिल --

काफी लाइटिंगस वगैरह है काफी लोग हैं।

और यहां पर अह पीछे का जो नजारा है।

एंड कुछ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह है।

और बढ़िया से चेयर्स वगैरा हैं सजाया गया हैं अच्छे से--

और आसपास काफी हरियाली भी है।

वहां पर काफी अ लोग हैं और--

कपड़े एक्टिविटी करने के लिए अं काफी अच्छे से सजाया गया है उसको--

और यहां मुझे एक बैनर नजर आ रहा है।

ये पेट्रोल पंप का स्टॉपेज है।

जहां पर बच्चों के गिफ्ट आइटम्स बॉर्बीज टॉयज गुड़िया--